यह एक नाई की दुकान का चित्र है जहाँ एक लाल रंग के वस्त्र में व्यक्ति दिखाई दे रहा है गेट पर लगा फोन पे का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक पंजाब एंड सिंध बैंक के चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ फ़ूलो की सजावट दिखाई दे रही है।